बिजली का तार दिख रहा है हरियाली है देखने में सुन्दर है ।

मछली बहोत सारा है हर तरह का मछली रखे हुए है तराजू भी है ।

सुन्दर है गुलाबी कलर का ड्रेस पहनी हुई है।